यह एक बहुत बड़ा चूड़ी का दुकान है यहां पे बहुत सारे चूड़ी है।

आज पास ढेर सारा गाड़ियां लगी हुई है।

जिसके ऊपर में दुकान के पोस्टर भी लगे हुए हैं बगल में--

फोनपे का भी सिस्टम है यहां पे पोस्टर में लिखा हुआ है देसी स्वाद।

ये एक दुकान है जो साउंड बॉक्स का है।

एक बहोत बड़ा तालाब है जहाँ पे टू तीन टूटी फूटी नाव रखी हुई है।

के अंदर बहुत सारे रूम भी बने हुए हैं ढेर सारा बक्सा पेटी रखा हुआ है।

बहोत सारे बाइक भी लगे हुए हैं मशीन भी बड़े बड़े हैं।